बहुत सारे श्रद्धालु जा रहे हैं पीछे एक लड़की भी है।

ये मॉल का फोटो है ऊपर बल्ब जल-जला हुआ है.

ये किसी रेगिस्तान का सीन हे.

बाए भी एक सडक है.

कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है.

बेड ए_टी_एम है बगल में ए_टी_एम के ऊपर फेडरल बैंक ए_टी_एम लिखा है.

सामने से एक लड़का अपने मोबाइल से फोटो खींच रहा है।

यहां एक कोरियम का दुकान है।

पंडाल है पंडाल में --